हमें यहा पर एक बहुत बड़ा समुंदर दिखाई दे रहा है हमें यहा पर--

पहाड़ दिखाई दे रहे है हमें यहा पर जहाज दिखाई दे रहा है हमें यहा पर सूरज दिखाई दे रहा है नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है हमे यहा पर पहाड़ दिखाई दे रहा है हमें यहा पर पानी दिखाई दे रहा

स्कूटीया दिखाई दे रही है बाइक दिखाई दे रही है कार दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद कलर की है कुछ काली कलर की है हमे यहा पर रोड दिखाई दे रही है तीन साइड दिखाई दे रही है।

हमे यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं हमे यहाँ पर नीला नीला आसमान भी दिख रहा हैं।

हमे यहाँ पर बोहत सारा पानी दिख रहा हैं तालाब दिख रहा हैं हमें यहाँ पर बोहत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं हमें यहांपर बोहत सारे मकान भी दिख रहे हैं।

यहा पर एक रूम दिखाई दे रहा है हमे स्टॅचूस दिखाई दे राहे है पोस्टर्स दिखाई दे रहे है ब्लॅक कलर के है कांच दिखाई दे रहे है व्हाईट कलर के है।

हमे यहाँ पर एक बिच दिखाई दे रहा हैं हमे यहाँ पर बहुत बड़ा समंदर दिखाई दे रहा हैं लोग दिखाई दे रहे हैं कचरा दिखाई दे रहा हैं बहुत सारे कागज के--

तलाव दिख रहा हैं हमे कीचड़ दिख रही हैं हमे यहाँ पर मिट्टी दिख रही हैं पिले कलर की।

बहुत सारे बुकीज दिखाई दे रहे हैं हमे यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं हमे यहाँ पे सफ़ेद कलर के टाइल्स दिखाई दे रहा हैं और दिवार जो है ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं।